यह चूरू जीले में स्तिथ जोधपुर मिष्ठान भण्डार है जिसमे मतलब तरह तरह की मिठाईया और पकवान बनाये जाते है।

यह चूरू जिले के मैन मार्केट में स्थित कोल्ड ड्रिंक की शॉप है जहां पर डिफरेंट टाइप के ड्रिंक अवेलेबल हैऔर इनका मतलब मार्केट में सेल किया जाता है।

जहा इस चित्र मै कार के पार्किंग स्लॉट को दिखाया गया है विभिन्न परकार के--

चुरू जिले के तारानगर में स्थित है रोनालट कंपनी।

गंगा हुडोई मे स्तिथ है जहा पर कार को किस्त --

यहां कार बैक दरसय है डिगी को दिखाया गया है और यहां पर वस्तुओ को रखने का उचित --